और इसमें बहुत सारे लोग मजे कर रहे हैं इस इमेज में कई सारे लोग अतरंगी-अतरंगी एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इसे बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है यह दिखने में बहुत सुन्दर और बड़ा है ।

यह एक हमें बहुत ही आ अच्छा और सुन्दर-सा इमेज दिखाया गया है जो दिखने में बहोत ही बढ़िया और बहोत ही खूबसूरत है इस इमेज में हमें एक अच्छे से सेखर सावन गेट दिखाया गया है।